और सीलिंग पर बहुत सारी लाइटे जल रही है।

इस दृश्य में एक साइकिल की दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम न्यू अनूप साइकल है।

दुकान के अंदर बहुत सारी साइकिले रखी हुई है और बच्चों के वॉकर भी।

तो टुकटुक लगी हुई है जिनका कलर ग्रीन और ब्लू है।

जमीन पर बहोत सारे छड़ रखे हुए हैं।

इस दृश्य में एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुएं हैं।

इस दृश्य में बहोत सारी मूर्तियां दिख रही है जिनके ऊपर ताज ल बना हुआ है।

पीछे दीवाल नजर आ रहा है जिसके अंदर गोल गोल का डिजाइन बना हुआ है।

रूम के ऊपर आई विल बी देयर फॉर यू लिखा हुआ है।

एक महिला बैठी हुई है जिसके कपड़े का कलर व्हाइट और ब्लू है।

पेड़ पौधे लगा हुआ है जिनका कलर ग्रीन है।